और यार हम भी चलेंगे मंदिर में घूमने यार बहुत मंदिर है यार --

इधर मछली दिख रही हैं हर जगह।

और भाई बोहोत बड़ा पार्क है ये तो यार कितना टॉप का लग रहा और कितना बढ़िया है भाई।